इस तस्वीर मे बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है जिसके नीचे दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

एक पत्थर सा रखा दिखाई दे रहा है वहाँ छोटे छोटे पत्थर भी डलें हुए है।

मुझे इज तसवीर मे अभि ये एक लाडका दिखाई दे रहा है जो काले कलर की शर्ट पहने हुए है लाल कलर का हैडफोन डाले हुए है और --

झे इस तस्वीर में एक बड़ीसी चट्टान दिखाई दे रही हैं चट्टान के बीचो-बीच एक छोटासा--

द्वाहार का कलर सफ़ेद है और नीले कलर का गोले बने हुए है नीचे एक व्यक्ति खडा --